--ओर यह टाईल्स भी लगे हुए और यहाँ पे बेड भी देख रहे होगे आप।

ये सूरज दिख रहा होगा आप को कितना मस्त नजारा दे रहा है और यहाँ बच्चा एक साइकिल पे खड़ा हुआ है।

ए_उ_ए_वी लिखा हुआ है एक बाम्बू मे देख रहे होंगे और गाड़िया देख रहे होंगे बहोत सारी--